पर एक गेट जैसा दिखाई दे रहा है गेट पे फूल बना हुआ है।

यहाँ पर कुछ सब्जी का ठेला जैसा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ऊपर पल्लियाँ भी लगी हुई है और यहाँ पे दो आदमी खड़े हुए है। एक आदमी ने ब्लू कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का लोअर पहन --

यह एक झूला जैसा दिखाई दे रहा है। इसमें अलग-अलग कलर के बॉक्स बने हुए हैं। एक येलो कलर का एक रेड कलर का है एक --